और एक मुझे बिल्डिंग भी दिख रही है सामने में घर है कुछ--

और आसमान में थोड़े बादल भी है साइड साइड से पहाड़ों का इलाका है इसलिए बादल छाए हुए हैं और पेड़ पौधे बहोत ही--

हर टेबल के ऊपर टिशूज रखें गए हैं और प्लेट्स हैं और टेबल के ऊपर गिलास हैं।

यहां पर बोहत सारे औजार है जिनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं।

बुक्स लेने नोट बुक्स लेने सामान लेने बहोत सारे मुझे यहां पर जो है बुक्स दिख रही है स्टेशनरी का यहां पर सामान दिख रहा है।

लोग है और एक स्कूटी और एक बाइक लगे हुए हैं।

एक छोटी सी रोड जो है पहाड़ों में बनाई गई है।

इस फोटो में मुझे एक अ गवर्नमेंट सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज --

और बोर्ड का रंग जो है काला है और इसके ऊपर सुनहरे--

आ इस फोटो में मुझे एक का बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।